पे आदमी बाइक पे जा रहा है कुछ सामान लेने सामने मंदिर दिख रहा है एक बाइक है।

बहोत सारे जेंट्स बैठे हुए हैं कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसमें लाइट जल रही है।